और ये बॉडी के लिए सही होता है।

और यहाँ बहोत सारे कपड़े मिलते हैं बच्चे का लेडीज जेंट्स सबका।

यहाँ बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है और यहाँ बहोत सारे इंजिनिअर आए हुए है जो अपने-अपने काम मे लगे हुए है और यहाँ अ बहोत सारे छड़ गिट्टी बालू ये सब रखा हुआ है और ये सब अपने कामे लगे हुए है और ये देखने में भी बहोत अच्छा लग रहा है ।

गणेश जी का स्था स्थापना हुआ है और बहुत बड़े बहुत बड़ा मूर्ति है और यहां आस पास मे बहुत सारे लोग हैं जो गणेश जी की स्थापना किए हैं और वो मूर्ति बहुत बड़े सुंदर लग रहे है और बहुत अच्छे से सजावट किए गया है यहां पे |